ये किसी मंदिर का फ़ोटो है। इसमें आसपास बहुत हरियाली है।

जैसा कुछ पलस्तर है या क्या है। समझ नहीं आ रहा।